यहाँ पर हमें कुछ बोर्ड चिपके भी दिखाई दे रहे है और किसी बैंक का लोगो दिखाई दे रहा है यहाँ पर ओर काफी सारी लाइट्स जलती हुई दिखाई दे रही है।

यहाँ पर साइड में हमें कुछ घाँस दिखाई दे रही है और कुछ खम्भे दिखाई दे रही है लकड़ी के--

एक पर एक व्यक्ति झुका हुआ टप दिखाई दे रहा हैं उसके पास हमें टप और फावड़ा दिखाई दे रहा और कुछ मिट्टियाँ दिखाई दे रही है।

मसाला दिखाई दे रहा है चाट का मतलब चाट दिखाई दे रहा और यहाँ पर एक प्लेट में चाट दिखाई दे रहा है एक व्यक्ति का हाथ दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर हमें एक नदी दिखाई दे रही है नदी में हमें नदी के ऊपर बना हुआ एक ब्रिज दिखाई दे रहा--

और यहाँ पर हमें दो बड़े से लगे हुए फ्रेम किया हुए फोटोज दिखाई दे रहे है हमें यहाँ पे अ अब्दुल कलाम की फोटो दिखाई दे रही है।

और यहाँ पर हमें नांव चलाते हुए दो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं ।